c में string library functions पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
string library functions
हम यह कुछ उदाहरणों की मदद से समझेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
उबंटु operating system version 1110
gcc compiler version 461
string library functions के परिचय के साथ शुरू करते हैं
ये functions का समूह हैं जो strings पर operations कार्यान्वित करते हैं
कई operations जैसे कि copying concatenation searching आदि समर्थित हैं
कुछ string library functions देखें
यहाँ हमारे पास strncpy function है
इसके लिए syntax है strncpy char str1 char str2 and int n
यह string str2 के पहले के n अक्षरों को string str1 में copies करता है
उदाहरण char strncpy char hello char world 2
output होगा wollo
यहाँ हमारे पास wo string 2 से और बाकी अक्षर string 1 से हैं
अब हम strncmp function देखेंगे इसके लिए syntax है strncmp char str1 char str2 और int n
यह string 1 के साथ string 2 के n अक्षर की तुलना करेगा
उदाहरण int strncmp char ice char icecream और 2;
output 0 होगा
अब हम देखेंगे कि string library functions का उपयोग कैसे करें
मैं आपको सामान्यतः उपयोगित कुछ string functions दिखाने जा रहा हूँ
मैंने editor पर पहले से ही program टाइप कर दिया है
मैं इसे खोलूँगा
यहाँ हमारे पास string लाइब्रेरी function है
ध्यान दें कि हमारी file का name strlen c है
इसमें हम string की लंबाई ज्ञात करेंगे
ये header files है stdio h और string h
यह हमारा main function है
यहाँ हमारे पास एक character variable arr है
यह value ashwini संचित करता है
फिर हमारे पास एक integer variable len1 है
यहाँ हम strlen function का उपयोग करके string की लंबाई ज्ञात करेंगे
परिणाम len1 में संचित होगा
फिर हम string और string की लंबाई print करते हैं
और यह हमारी return statement है
अब program को निष्पादित करें
अपने कीबोर्ड परctrl alt और t कीज़
एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए type करें gcc space strlen c space o space str1 enter दबाएँ
type करें dot slash/str1 enter दबाएँ
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है
string = ashwini length = 7
आप यहाँ 123456 और 7 देख सकते हैं
अन्य string function देखें
यहाँ हमारे पास string copy function है
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेमstrcpy c है
इसमें हम source string को target string में copy करेंगे
यहाँ हमारे पास source string में ice है यह target string में copied होगा
यह हमारा strcpy function है
यहाँ हम source string और target string print करेंगे
निष्पादित करें और देखें
अपने terminal पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए type करें gcc space strcpy c space hyphen o space str2 enter दबाएँ
type करें dot slash/str2 enter दबाएँ
output इस तरह प्रदर्शित होता है
source string = ice
target string = ice
अन्य string function देंखे
अब हम string compare function देखेंगे
ध्यान दें कि हमारी फाइलनेमstrcmp c है
इसमें हम दो strings की तुलना करेंगे
यहाँ हमारे पास character variables हैं str1 औरstr2
str1 ice के रूप में value संचित करता है और str2 cream के रूप में value संचित करता है
यहाँ हमारे पास i और j के रूप में integer variables हैं
इसमें हम strcmp function का उपयोग करके string की तुलना करेंगे
यहाँ हम str1 की तुलना करेंगे जो है ice hello के साथ
परिणाम i में संचित होता है
इसमें हम string2 की तुलना करेंगे जो है cream cream के साथ
परिणाम j में संचित होता है
फिर हम दोनों परिणामों को print करेंगे
और यह हमारी return statement है
program को निष्पादित करें
अपने terminal पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए type करेंgcc space strcmp c space hyphen o space str3
enter दबाएँ
type करें dot slash/str3
output प्रदर्शित होता है 10
अपने program पर वापस आएँ
यहाँ हमें 1 और यहाँ हमें 0 प्राप्त होता है
अपनी slides पर वापस आएँ
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा string library functions
strlen
strcpy
strcmp strncpy
और strncmp
नियत कार्य के रूप में
string best और string bus को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक c program लिखें
सुझाव: strcat char str1 char str2;
और string library में अन्य functions भी देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद